यहां पर बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर बहुत सारे--

यहां पर कुछ कच्ची मिट्टी भी दिखाई दे रही है।